यह एक गंदा पानी दिख रहा है यही पर एक पोल --

यह पर एक टेबल है यही पर एक दिखाई देरा यही बहुत बढ़िया दिखाई देरा।

आड़े बहुत एक बड़ा बंगला दिख रहे हैं यह कांच का शीसा दिख रहे हैंयहां एक पे --

यह आड़ एक ऊपर धोल रंग की छात है।

आड़ एक फैन दिखाई दे रहा है यही पर एक एसी भी दिखाई दे रही है यही पर बहुत एक बड़ी लाइट दिख रही है यहां पर धोल कलर --